यहाँ मेरे को एक खुला ग्राउंड दिख रहा है एक लाइट दिख रहा है कुछ प्लेयर्स दिख रहे हैं एक पाइप दिख रहा है।

एक कुछ गाड़ी दिख रही है एक कार दिख रहा है खुला सड़क दिख रहा है।